यहां पर देख सकते हैं ग्लास दिखाई दे रहे हैं और ग्लास सेंटर से रखी गई है अम जैसे नीचे ग्लास करके रखे गए हैं और फिर ऊपर जैसे-जैसे --

दिवाल नीचे है यहां पर कुछ तस्वीरे बनी हुई है स्वच्छ --

और लेडीज बैठी हुई है और जेंट्स खड़ा हुआ हैे और उसी पत्थर पे बैठे भी हैं और खड़े भी हैं।

कार जैसी दिख रही है कांच फ्रेश दिखाई दे रहा है।

यहाँ देखियें रात का समय है और यहाँ पे कुछ प्रोग्राम शा है जैसे कि यहाँ पे कुछ --

और यहाँ पे अ एक छोटा-सा दरवाजा भी दिख रहा है। बगल में छोटी-सी रोशनदानी है।

और ये इमेज जो आप लोगों को दिखाया गया है ये कुछ अं यहां की ज़ नीचे की फर्श ब्लैक एंड व्हाइट --

और फोर व्हीलर भी दिखाई दे रही है और बड़े-बड़े पेड़ भी दिख रहे हैं जिसमे बोहोत घने पत्ते भी लग रहे हैं।

और बगल-बगल में घर्स भी दिख रहे हैं जो --

अ थोड़े-थोड़े डेकोरेट किए गए है। नीचे गमला ल गमले में पेड़ लगे हुए हैं छोटे-छोटे और इधर एक --

और एक ब्लू कलर का भी गिटार दिख रहा है। नीचे थोड़ा सा फर्श दिख रहा है और यहाँ पे कुछ सामाने भी रखीं --